कपड़ें यहाँ पे मिनी ड्रेस और यहाँ बच्चो कपड़े से लेकर बड़े तक कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं और अच्छे कपड़े मिलते हैं।

बांस यह इसका पेड़ बड़ा जंगली है जंगल में पाया जाता है | बांस एक बहुत लाभदायक होता है। बांस से काफी काम होते है। बांस से शटरिंग है और भी काम होते है। बांस --

मालगाड़ीयह एक कंट्री से दुसरे कंट्री भी जाती है। इसमें माल लोड होता है। इसमें क तरह-तरह के माल आप कुछ भी इसमें लोड कर सकते हैं। यह रेल की पटरी से चलती है। यह सड़क पर नही चल सकती।